इसमें लीड पेन पुस्तक और लाइब्रेरी टाइप दिखाई दे रहा है दुकान के ऊपर चद्दर डाले हुए है।

और बच्चो के पीछे एक बड़ी सी दीवाल जो गुलाबी कलर की दिखाई दे रही है।

इसमें हमें कुछ लड़के और लड़की डांस करते हुए दिखाई दे रहें हैं एक डांस क्लब में कुछ स्टेप कर रहें हैं।

इसमें हमें काले और पिले रंग का एक ऑटो रिसक रिक्शा दिखाई दे रहा है जिसमे आगे--

इसमें हमें बहाल का नज़ारा दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक लंबी सड़क दिखाई दे रही है।

बतख पानी पी रही है और उनके सामने एक बड़ी-सी लोहे की जाली लगी हुई है।

इसमें हमें एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर दखाई दे रहा है तथा ये है हवाई अड्डा का नज़र है।

जो काँच ही काँच की बानी हुई है तथा उसमे कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे है जो पिले रंग के दिखाई दे रहे है।